meet the gimp के spoken tutorial में आपका स्वागत है
पिछले tutorial में मैंने आपके पास यह image छोड़ी थी
मैं इस image में ship के रंग को थोड़ा और गहरा करना चाहता हूँ
और ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका layers के साथ कार्य करना है
अतः सर्वप्रथम मैं image के उस हिस्से को zoom करता हूँ जहाँ ship है
और मैं एक नई layer जोड़ने के विकल्प पर click करता हूँ और साधारणतया एक नई layer जोड़ता हूँ
मैं इस layer को ship name देता choose और मैं layer fill प्रकार के रूप में transparency का चयन करता choose
अब अगला कदम सभी तीन रंग चैनलों की चमक को कम करना है और यह करने के लिए मुझे multiply mode का प्रयोग करना चाहिए और इस बार
मैं यहाँ अन्य रंगों के साथ द्विगुणित करने के लिए gray रंग का प्रयोग करता हूँ क्योंकि यह image में ship को gray रंग में दिखाने में मदद करता है
अतः रंग चयन mode के विकल्प पर जाएँ और slider को नीचे खींचते हुए gray रंग के मान को तब तक कम करें जब तक मुझे मेरी पसंद की gray रंग की shade प्राप्त नहीं होती
और अब बस image में gray रंग को खींचें और आपको एक gray रंग के जलयान से युक्त एक gray रंग की image प्राप्त होती है
layer dialog पर वापस आकर मैं opacity slider की मदद से और gray रंग की layer को on एवं off करने के द्वारा gray रंग की तीव्रता को नियंत्रित कर सकता हूँ
किन्तु इस layer का प्रभाव पूरी image पर लागू होता है और मैं इस प्रभाव को जलयान के क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित करना चाहता हूँ
यह करने के लिए मैं एक layer mask का प्रयोग करता हूँ
layer mask यह परिभाषित करता है कि layer को कहाँ दिखाई देना चाहिए और कहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए
मैं ship named layer पर जाता हूँ और मैं उस layer पर right click करता हूँ और फिर add layer mask विकल्प का चयन करता हूँ और मैं इनिशियलाइज़ layer mask में black कलर का चयन करता हूँ क्योंकि black कलर सभी लेयरों को छिपाने में मदद करता है और white कलर सभी लेयरों को दिखाने में मदद करता है
और इन अन्य विकल्पों के बारे में मैं आगे के tutorials में बताऊंगा add पर click करें
आप देख सकते हैं कि layer का कोई प्रभाव नहीं है
मैं layer को on और off कर सकता हूँ किन्तु layer mask लगाने के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं होता
किन्तु मैं layer mask में paint कर सकता हूँ या किसी अन्य edit tools का प्रयोग कर सकता हूँ
और जब मैं paint करता हूँ या tools का प्रयोग करता हूँ तो यह प्रभाव image में दिखाई देगा
layer में paint करने के लिए मैं white foreground colour और black background colour का चयन करता हूँ
मैं brush tool पर click करता हूँ option dialog पर जाएँ और एक brush का चयन करें जो गोलाकार 19 pixels का है
और मैं पुनः यह जांच करने के लिए लेयरों पर जाता हूँ कि layer mask selected हुआ है या नहीं क्योंकि मुझे layer mask को paint करना है layer को नहीं
मैं आपको इसका प्रभाव दिखाता हूँ
मैं layer mode को बदलकर normal layer mode कर देता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि image की ऊपरी layer अदृश्य हो जाती है
मैं यहाँ एक brush select करता हूँ और जलयान के एक भाग पर painting करना शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक gray रंग की layer प्रकट होती है
अब जब मैं स्वयं एक layer का चयन करता हूँ तथा उसे paint करता हूँ आप देख सकते हैं कि अब layer gray रंग के बजाय सफ़ेद रंग में paint हो गई है
मैं पुनः layer mask का चयन करता हूँ और x की key दबाकर foreground colour को black colour में तथा background colour को white colour में बदलता हूँ
और अपने layer mask में सफ़ेद रंग से painting करना शुरू करता हूँ
और काले रंग के कारण image छिपी रहती है
मैं सिर्फ ctrl + z दबाकर अनचाहे प्रभावों को समाप्त कर सकता हूँ और यहाँ हम वापस ship के layer mask को paint करते हैं
अब मैं background रंग को काले रंग में और foreground रंग को सफ़ेद रंग में बदल देता हूँ और ship की form को भरना शुरू करता हूँ
मुझे लगता है कि normal mode में paint करना अधिक आसान होता है
चूँकि सामान्य mode में painting करने के बाद हमें एक gray रंग का ship प्राप्त होता है अतः एकाधिक layer mode की तुलना में इसे background से अलग करना अधिक as होता है
ship के fine edges को paint करने के लिए मैं brush size को कम करता हूँ
आप तीन अलग अलग तरीकों से एक छोटी brush का चयन कर सकते हैं
पहला तरीका brush के आकार को कम करने के लिए scale का प्रयोग करना है
दूसरा तरीका यहाँ इस छोटे नीले रंग के त्रिभुज पर click करें और किसी भी आकार के brush का चयन करें या आप बड़े कोष्ठक दबाकर भी यह कर सकते हैं
खुला बड़ा कोष्ठक brush के आकार को कम करता है और बंद बड़ा कोष्ठक brush के आकार को बढ़ाता है
मैं विवरणों के लिए छोटे brush का प्रयोग करना चाहता हूँ अतः मैं खुला बड़ा कोष्ठक दबाता हूँ
किन्तु आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ और आपको पूरे ship को पेंट करने के लिए मेरा इंतज़ार नहीं करना होता है
अब मैं पूरे ship को एक gray रंग की layer से पेंट करता हूँ
और मुझे उन क्षेत्रों की जांच करनी होगी जहाँ मैंने किनारों को अधिक पेंट कर दिया है
अतः मैं layer mode को बदलकर multiply multiply mode का चयन करता हूँ और opacity slider को थोड़ा कम करता हूँ
opacity slider को इस तरह समायोजित करें कि आपको image में एक गहरे रंग का ship प्राप्त हो जाए
और मैंने काफी अच्छा काम किया है
किन्तु मैं ship के सामने नदी की सतह के होने से खुश नहीं हूँ
और मुझे इसे थोड़ा और चमकदार बनाना चाहिए
अतः मैं x की key दबाकर foreground color को काले रंग में बदलता हूँ और ship के सामने की नदी की सतह को काले रंग से पेंट करना शुरू करता हूँ जिससे इसे ship की तुलना में अधिक गहरा बनाया जा so
मुझे इस image पर कार्य पूर्ण करने के बाद इस प्रभाव की जांच करनी होगी और तदनुसार परिवर्तन करने होंगे
अब उस कार्य की जांच करते हैं जो मैंने किया है
मैं zoom mode का प्रयोग करके इस image में zoom करता हूँ और मैं सिर्फ opacity slider को खिसकाकर ship के रंग को थोड़ा अधिक गहरा और चमकीला बना सकता हूँ
मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है और मैंने layer की masking करके एक अच्छा कार्य किया है
किन्तु मुझे लगता है कि ship का रंग थोड़ा फीका है और यह संभव है क्योंकी ship layer colour correction layer के ऊपर है और वे ship layer के आगे कार्य कर रहे हैं अतः मुझे सिर्फ ship layer को colour correction layer के नीचे रखना है
और आप परिवर्तन देख सकते हैं ship का रंग अब रंगहीन हो जाता है
अब मैं पूरी image को देखता हूँ और इसके लिए shortcut कीज़ shift + ctrl + e है
और मुझे लगता है कि यह background रंग चिड़ियों और ship के bit एक अच्छा संतुलन है शायद ship की तीव्रता को थोड़ा और कम करना चाहिए
और अब यह बेहतर लगता है
मुझे लगता है कि यह सर्वोत्तम है
जब मैं बिना रंग गहरा किए image और ship layer की तुलना करता हूँ चिड़िया और ship ship layer में काफी गहरे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस image के लिए layer mask का प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए
मैं किसी भी समय सभी layer tools की मदद से प्रभावों को बदल सकता हूँ
मैं सिर्फ एक चीज़ भूल गया कि मैंने layer mask को बहुत sharp edge के साथ painted किया है और जब मैं image को zoom करता हूँ तो आप यहाँ एक hard hard border देख सकते हैं और मैं थोड़ा चिकना border चाहता हूँ
क्योंकि यह विशेषकर कोहरे के परिदृश्य में थोड़ा बनावटी प्रतीत हो सकता है
उसके लिए मैं थोड़ा edit करने के लिए layer mask का चयन करता choose और tool bar से filter का चयन करता choose और blur चुनता choose
blur में मैं gaussian blur का चयन करता choose और ship के भाग पर जाता choose और मैं horizontal radius के मान को कम करके 4 कर देता choose और ok पर click करता choose और layer mask को blur करता choose और आप यह प्रभाव देख सकते हिं कि ship के hard edge hard edge चले गए हैं और अब यह अच्छा लगता है
अब मैं इस image के साथ कुछ सुधारात्मक कार्य करने के लिए तैयार हूँ
जब आप image को देखते हैं तो आपको पानी में कुछ लकड़ी दिखाई देती है और बाईं ओर एक चिड़िया का आधा हिस्सा दिखाई देता है जो कि किनारे पर cut गया है और मैं उन्हें clone करना चाहता हूँ
अतः पुनः मैं zoom tool का चयन करता choose और वहां zoom करता choose जिस भाग में लकड़ी का भाग दिखाई देता है और healing tool का चयन करता choose
healing tool कुछ हद तक clone tool की तरह है लेकिन यह यहाँ इस स्थिति में बेहतर काम करता है
जब मैं healing tool का चयन करता हूँ तो मुझे mouse point के साथ एक वृत्त दिखाई देता है और मैं image पर click नहीं कर सकता हूँ और mouse point में एक छिपा हुआ चिन्ह है
छिपा हुआ चिन्ह इसलिए है क्योंकि मैंने heal source का चयन नहीं किया है और मैं control के साथ click करके यह कर सकता हूँ
मुझे एक अच्छे heal source का चुनाव करना है और फिर मुझे ctrl दबाकर click करना है और मुझे लगता है कि यह heal source के लिए एक अच्छा स्थान है और अब मैं लकड़ी वाले भाग पर click करता हूँ
यह यहाँ एक समस्या है
और यहाँ समस्या यह है कि मैं गलत layer पर काम कर रहा हूँ
मुझे background layer पर काम करना चाहिए था और मैं layer mask को edit करने का प्रयास कर रहा था
वास्तव में मुझे background layer का चयन करना चाहिए और उस layer की एक copy बनानी चाहिए क्योंकि मैं मूल background layer में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता choose
अब पुनः healing tool का प्रयोग करके देखते हैं
और अब मैंने दूसरी गलती कर दी है
मेरा source यह ऊपरी gray layer है
और वास्तव में मैं इसे अनडू undo कर सकता हूँ और यहाँ एक नए source का चयन कर सकता हूँ ठीक है उसको यहाँ लाएं यहाँ click करें और यह गायब हो गया है
इस भाग के लिए मैं इस भाग को source के रूप में चुनता हूँ और click करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यह चला गया है
image को 100% mode में देखते हैं
यह काफी अच्छी दिखाई देती है शायद मुझे इसे थोड़ा और बड़े brush के साथ करना चाहिए था क्योंकि ये बिंदु अभी तक उसमें दिखाई दे रहे हैं
अतः फिर से मैं healing tool का चयन करता हूँ और source का चयन करता हूँ और उन बिन्दुओं पर clicked करता हूँ
मुझे लगता है कि इसने कार्य किया
अब मुझे बाईं ओर इस आधी cut हुए चिड़िया को गायब करना है
इसके लिए मैं यहाँ image में पुनः zoom करता हूँ और मैं clone tool का चयन करता हूँ
cloning tool healing tools जितना जटिल नहीं है और मुझे इस tool का प्रयोग करने का कोई ख़ास अनुभव नहीं है चूँकि यह gimp में नया है
अतः मुझे healing tool जैसी प्रक्रिया का पालन करना है मैं source के रूप में सिर्फ यहाँ click करता हूँ फिर यहाँ चिड़िया पर click करता हूँ और मुझे लगता है कि यह कार्य करता है
वापस 100% पर जाएँ उत्तम यह चिड़िया गायब हो गयी है
मुझे लगता है कि अब यह image तैयार है
सबसे पहले मैं इस image को थोड़ा चमकदार बनाना चाहता हूँ किन्तु मुझे लगता है मैं finishing steps के रूप में यह कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि यह उस तरह कार्य करता है जैसा यह अभी है
और मैं इस image को एक poster पर print करना चाहता हूँ
और printer aspect ratio aspect ratio के 3:2 का उपयोग करता है और इस image का aspect ratio 2:1 है अतः अब मुझे इसे बदलना होगा
मैं canvas size की मदद से यह कर सकता हूँ जो वहां tool bar में image में है
मैं canvas size का चयन करता हूँ और देखती हूँ कि इमेज1868 pixels चौड़ी है और इसकी ऊँचाई 945 pixels है और अनुपात की गणना करने के लिए मैं अपने calculator का प्रयोग करता हूँ
अतः मैं 1868 को 3 से भाग देता हूँ और फिर 2 से गुणा करता हूँ जिसके परिणामस्वरूप मुझे 1245 प्राप्त होता है
मुझे इसे यहाँ unchain करना होगा अन्यथा चौड़ाई भी बदल जाएगी और ऊँचाई में 1245 type करें
अब image ठीक है
यह top पर fit होगी और bottom पर एक सफ़ेद strip छोड़ देगी और मैं लेयरों को resize नहीं करता सिर्फ ok पर click करें और अब मेरे पास एक ऐसी image है जिसके bottom पर कुछ नहीं है
मुझे bottom भाग को भरना है और उसके लिए मैं layer fill type white के साथ एक नई layer का चयन करता choose और इस layer को सबसे निचली layer के रूप में प्रयोग करता choose
bottom में इस सफ़ेद क्षेत्र को बाद में हटा दिया जाएगा
किन्तु मैं इसे printer के लिए clue के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ
यह printer मूल रूप से एक print engine युक्त एक computer है और इस बारे में कुछ clues प्राप्त करने के लिए इसका परीक्षण करते हैं कि इसे कैसे handle करते हैं
यह image यहाँ काफी असामान्य है यह लगभग काली और सफ़ेद है और इसमें अधिक चमक भी नहीं है
मैं यहाँ एक आयत का चयन करता हूँ और इसे पूरी image के ऊपर रखता हूँ blend tool gradient filled with का चयन करता हूँ और gradient को काले से सफ़ेद पर set करता हूँ
और अब मैं इसे यहाँ gradient से भरता हूँ
बस click करें और एक line खींचें और अब मेरे पास आयत में काले और सफ़ेद range की पूरी colour range colour range है
मेरे पास काले से पूरे सफ़ेद रंग का एक क्षेत्र है
मैं इसे एक बार और दोहराता हूँ
यहाँ blend tool का चयन करके और इस बार मैं saturation नामक एक विशेष gradient का प्रयोग करता हूँ इसमें पूरी colour range colour range है
और पुनः इस gradient को भरें अब मेरे पास printer के लिए सुझाव है कि image को सुरक्षित कैसे करें और यदि रंग नहीं आते हैं मैं यहाँ हमेशा कह सकता how इसे लाल माना जा सकता है और इसे हरा माना जा सकता है
मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है
अधिक जानकारी के लिए info @meet the gimp org पर जाएँ या meet the gimp org blog पर tips करें या top floor से forum of tips पर आयें
मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा मुझे क्या बेहतर करना चाहिए आप भविष्य में क्या देखना चाहते हैं
यह tutorial प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ